एक बेड नजर आ रहा है उसपर सफ़ेद कलर की बेडशीट अ अ लगी हुई दिख रही है कुशन्स रखे हुए है जिनके --

दिख रहे है बाहर साइकिले ए खड़ी हुई है। एक कार आदि दिख रही है जिसका टायर दिखाई दे रहा है सड़क दिख रही है।

बजाते दिखायी दे रहे है एक आदमी सहनाई बजा रहा है एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है।

एक बच्चा दिखाई दे रहा है और पीछे पेड़ दी--

आचार के डब्बे दिख रहे है नीचे सोर्स सॉस के डब्बे दिख रहे है और कुछ ट्रॉलियां दिखाई दे रही है।

लटकते नज़र आ रही है उनके पीछे एक ब्रिज दिखाई दे रहा है।

शोरूम दिखाई दे रहा है जिसमे अलग-अलग रेक्स में कपड़े--

टंगे हुए दिख रहे है बाहर बोर्ड लगा हुआ है जिसमे लिखा हुआ है सेल और ऊपर लिखा हुआ है रेयर रैबिट --